यहाँ पर दूल्हा-दुल्हिन बैठे हुए हैं।

और वो मंदिर सरमाइका का बना हुआ है और अच्छा लग रहा है देखने में।

लग रहा कि ये दुकान अभी खोला है इसलिए यहां पर भीड़ भी नहीं हैं।

यह एक दृ फोटू लग रहा है गौशाला का है।

यह कोचिंग सेंटर कंप्यूटर क्लास की लग रही है।

जिम में जिम का आनंद उठा रहे हैं ये लोग।

जिस के माथा पर एक ताज बना हुआ है।

जिस का नाम डीप शूस लिखा हुआ है।

सभी लोग योगा कर रहे हैं।